इसमें दो जाली वाले गेट दिखाई दे रहे है पीछे कुछ घर भी दिखाई दे रहे है और लाइट के तार भी दिखाई दे रहे है कुछ पेड़ भी नजर आ रहे है ।

इस इमेज में भगवान की मूर्ति नजर आ रही है जो की काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है जो की पूरी गोल्डन कलर की नजर आ रही है ये एक बेंच पर रखी नजर आ रही है जो की सफ़ेद कलर की है।